यहाँ पे गार्डेन टाइप्स दिख रहा है और सामने मे एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है जो रेड कलर का है उनमे बहुत सारी खिड़किया बनी हुई है।

यहा पर एक मूर्ति दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की है नीचे मे उसको ब्लैक कलर का टाइल्स लगा हुआ है और सामने मे लाइट दिखाई दे रहा है और पानी भी कुछ दिखाई दे रहा है ब्लू ब्लू नीचे घास लगी हुई है।

कुर्सियां चेयर भी रखी हुई है।

पाइप लगा हुआ है लोहे का है।

सामने मे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमे बहुत सारे हरे-हरे पत्ते लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर एक बहुत बड़ा कार्यालए बना हुआ है जो बहुत अच्छा लग रहा है घास लगी हुई है।